यहाँ पर पानी है और धड़ियाई एक घोड़ा है और पीछे पेड़-पौधे हैं पेड़-पौधे का कलर हरा है और मिट्टी भी है।

पीछे मकान है मकान में खिड़की है।

यह एक मैरेज हॉल है।

इसमें बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं।

यह नदी का किनारा है और सड़ियाँ बनी हुई है सड़ियों का कलर ब्राउन और वाइट है।

सीडियों के बगल में मकान है।

एक लोंग दिवाल के पीछे खड़ा है।

यह एक वाटर पार्क है जिसमें काफी सारे स्लाइडिंग मशीन लगे हुए हैं।

और बिल्डिंग का कलर वाइट और ग्रीन है और ऑरेंज --

यह एक मैरिज का हॉल है जिसमें--

काफ़ी सारे लोग खड़े हैं जिसमें एक लोंग फोटो खींच रहा है।

सिल्वर और ग्रीन है और फिर पिंक कलर की इसकी दीवार बनी हुई है।

यह एक बहुत बड़ी नदी है नदी का कलर नीला है और पीछे आसमान--

कुछ लोग मछली काट रहे हैं और काफी सारी मछलियाँ जमीन पे रखी हुई हैं।

यह एक डाक घर प्रतीत हो रहा हैं।

आगे डाक बॉक्स रखा हुआ हैं।

और दरवाजा लगा हुआ हैं दरवाजा लोहे का हैं।

और एक बिजली का खंभा--

और इस पे काफी सारे तार फैले हुए--

और अगल-बगल पेड़-पौधे हैं जो कि ग्रीन कलर का हैं।

और काफी सारे टेबल लगे हुए हैं।

और पीछे बिजली का खंभा हैं और बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं।

जिसकी बिल्डिंग काफी बड़ी हैं बिल्डिंग के पीछे आसमान हैं जो कि नीले कलर का हैं।

और काफी सारे लाइटें लगी हुई--

और दो टेबल रखे हुए हैं।

यूगा क्लास का दिवाल ग्री वाइट कलर का हैं।

पार्क में एक टेबल लगी हुई हैं और चार चेयर लगे हुए--

छोटे-छोटे गमले में पौधे लगे हुए हैं।

इस रेस्टोरेंट में टेबल हैं चेयर हैं।

और घाश वगैरह हरे-हरे हैं।

यह एक लाइब्रेरी हैं जो कि अलग-अलग कम कंपार्टमेंट में बना हुआ हैं।

और लाइब्रेरी की फर्श वाइट कलर की हैं।

जिस में का नाम हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला हैं।

और इसमें काफी सारे लोग खड़े हैं स्टेज एक बना हुआ हैं।

सलून के बाहर एक लोग खड़े हैं।

यह एक मकान हैं इसमें चार लोग खड़े हैं।

और एक बंदे ने वाइट और--

और एक महिला हैं जो की--

और पीछे कुछ लोग खड़े हैं और एक दो फूल रेड कलर के हैं।

यह एक फंक्शन का डेकोरेशन हैं।

पेड़-पौधा हैं जो की इसका पत्ता हरा हैं।

और कुछ सामान रखने का रेक बना हुआ हैं।

पीछे बिजली का खंबा हैं और कुछ लंबे-लंबे पेड़ हैं।

रंग बिरंगे मालाए लगी हुई हैं।

वाइट और रेड कलर का सोफा हैं।

पेट्रोल पंप के पीछे एक घर बना हुआ हैं इसमें काफी सारे ईटे लगे हुए हैं।

कुछ नमक का पैकेट हैं कुछ लहसुन का हैं पोटली हैं।

और दुकान का कलर वाइट है और इसमें अलग-अलग कंपार्टमेंट का कलर वाइट है।

जिन पे चेयर रखी हुई है चेयर का कलर ग्रीन है और रेड है।

लाइट पिंक और ब्लू हैं और झंडा लगा हुआ हैं दीवाल पे--

यह एक जिम का ऑफिस हैं।

यह स्टाफ रूम हैं स्टाफ रूप में वर्कर बैठे हुए हैं।

और इस रूम में बैठ के वर्कर काम कर रहे हैं।

यहाँ पे एक टेबल हैं जो कि काफी खराब स्थिति में हैं।

और एक वायर हैं।

और इस मशीन का कलर येलो और ब्लैक हैं।

ये एक दीवार हैं दीवार पे सी_बी_एस_सी कोशिश सेंटर की पमपलेट छपी हुई हैं।

और एक बड़ा सा मकान है और एक पानी की टंकी है और --

एक पौधा हैं जिसमें पत्ते लगे हुए हैं।

यह एक फिश एक्वेरियम की शॉप हैं।

जिसमें मालाएं लगी हुई हैं गेट के आगे और इसके दो दरवाजे हैं।

पेट्रोल पंप हैं और यहाँ पे बारिश हो रही हैं काफी सारी बाइक खड़ी हैं।

इसका डेकोरेशन फूल से हुआ हैं।

और एक बोतल रखा हुआ हैं और एक खिड़की हैं खिड़की पे के आगे कर्टेन लगे हुए हैं।

और इस मूर्तियों का कलर अनेक प्रकार का हैं।

यहाँ बच्चों के बीच में कंपटीशन हो रहा हैं।

और इसका दीवार ग्रीन कलर का--

छोटे-छोटे पौधे हैं जिनका पत्ता हरा हैं।

काफी सारे पेड़ हैं जिनका पत्ता हरा-हरा है।

दुकान का सटर काफी कलर में--

गेट के आगे लाइट लगी हुई है एक कार खड़ी है।

और काफी सारी लाइटें लगी हुई है।

पे रेड कलर की कार्पेट बिछी हुई है।

एक पुरुष खड़े हैं और एक महिला खड़ी है।

और यहाँ पे साइड में बास में फ्लावर लगे हुए हैं।

और नीचे बहुत सारे रेत हैं और--

पीछे हरे-हरे घास लगे हुए हैं।

पीछे आसमान है जिसका कलर नीला है।

तारबूज है और नारंगी है।

और फल के पिछली साइड --

एक ने टी-शर्ट पहन रखा है और लोअर पहन रखा हैं।

यहाँ पे किसी चीज का शॉप है।

इस रेस्टोरेंट का कलर ग्रे है।

और ग्रीन कलर की कारपेट है और यहाँ पे काफी सारे बल्ब लगे हुए हैं।

चार लगे हुए हैं और कुछ बाइक लगे हुए हैं।

पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं।